और नीचे में टाइल्स भी लगा हुआ है।

इसके सामने भी रखा हुआ है इसके सामने चाय पीने वाला कप टी भी दिखाई दे रहा है।

और इसमें बहुत सारा आम का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

पलंग पर एक चदर रखा हुआ है जिसका कलर लाल हैजिसमें फूल भी छापा हुआ है।

सामने एक एल_सी_डी दिखाई दे रहा है और बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

और हेलमेट भी पहना है।

और सामने खिड़की खुल्ला दिखाई दे रही है।

और एक टीचर कुर्ता और पजामा पहना हुआ है।

उस रस्ते पे एक किरान गाड़ी भी खड़ा है।

ईश कमरे में बहुत सारा चेयर दिखाई दे रहा है।

ऊपर पंखा लगा हुआ है।